यहाँ एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सामने एक माल गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम है क्योंकि ट्रेन को आने में अभी बहुत ज़्यादा समय है।

और सामने उन फ्लैट्स को लाइट चले जाने पर पावर लगाने के लिए जनरेटर लगा हुआ है।

तथा कम्बल की या कोट की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। धुलाई पानी से होती है और ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल से होती है।

इनसे मालाएं बनाई जाती हैं प्रमुख तौर पे।